जाके मस्त दिख रहा है कॉफ़ी पिलीजिए मस्त दिख रहा है लाइट उत भी बेट उत भी सब मस्त दिख रहा है सब मस्त दिख रहा है पेट्रोल मस्त दिख रहा है कुर्सी वुर्सी भी मस्त दिख रहा है।